नमस्कार दोस्तों getting started with ipython पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होगें ipython interpreter शुरू करना
ipython interpreter बंद करना
ipython session हिस्ट्री नेविगेट करना
ipython में tabcompletion का उपयोग करना
ipython में प्रलेखीकरण देखना
अधूरी या गलत कमांड रोकना
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबंटु लिनक्स 1404 ऑपरेटिंग सिस्टम
python 352 ipython 510
ipython क्या है
यह tabcompletion और मदद करने में आसान जैसी विशेषताएं प्रदान करता है
पहले देखते हैं कि ipython interpreter शुरू कैसे करें
सबसे पहले कीबोर्ड पर ctrl + alt + t कीज़ एक साथ दबाकर टर्मिनल खोलें
prompt पर ipython3 टाइप करें और एंटर दबाएं
यदि ipython संस्थापित नहीं है तो कृपया instruction sheet का अनुकरण करें
यदि ipython संस्थापित है तो टर्मिनल पर ipython command चला कर ipython interpreter लोड होता है
python और ipython के वर्जन्स जो संस्थापित हैं टर्मिनल पर प्रदर्शित होते हैं
ipython द्वारा कुछ अतिरिक्त मददगार जानकारी दर्शाई गई है
इसके बाद हमें i n bracket 1 के साथ प्रोम्पट मिलता है
अब देखते हैं कि हम ipython interpreter बंद कैसे करें ctrl+d कीज दबाएँ
पुष्टि करने के लिए एक प्रोम्प्ट प्रदर्शित होगा क्या हम सही में बाहर जाना चाहते हैं
हाँ के लिए y टाइप करें और ipython बंद करें
ध्यान दें y स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिया गया है अतः यह डिफॉल्ट है
हम एंटर भी दबा सकते हैं और बाहर आ जायेंगे
साथ ही नहीं के लिए n टाइप करें यदि आप ipython बंद नहीं करना चाहते हैं
y टाइप करें हमने ipython interpreter बंद कर दिया है और वापस टर्मिनल प्रोम्प्ट पर आ गए हैं
फिर से शुरू करें टर्मिनल में ipython3 टाइप करें और एंटर दबाएं
अब सीखते हैं कि इंटरप्रेटर का उपयोग कैसे करें
ipython prompt पर 1 plus 2 टाइप करें और एंटर दबाएं
हम पाइथन कमांड के निष्पादन के लिए एंटर दबाते हैं कृपया ऐसा सभी कमांड को टाइप करने के बाद ही करें
ipython तुरंत आउटपुट 3 प्रदर्शित करता है
ध्यान दें कि आउटपुट out square brackets 1 इंडिकेशन के साथ प्रदर्शित होता है
अब कुछ अन्य ऑपरेशन्स करते हैं जैसे कि
प्रत्येक बार हम एंटर दबाते हैं और ipython console window पर आउटपुट देखते हैं
देखें कि हम ipython में पिछली कमांड पर कैसे नेविगेट कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप हम print open parenthesis 1 plus 2 close parenthesis निष्पादित करना चाहते हैं
पूरी कमांड टाइप करने के बजाय हम पिछली टाइप की गई command 1 plus 2 रिकॉल कर सकते हैं
command 1 plus 2 पर वापस आने के लिए अप ऐरो की का उपयोग करें
अब पंक्ति की शुरुआत में नेविगेट करने के लिए बाएंऐरो की का उपयोग करें
कीबोर्ड पर print open parenthesis close parenthesis शब्द टाइप करें
हमने कमांड को print 1 plus 2 में बदल दिया है अब एंटर दबाएं
इंटरप्रेटर परिणांम 3 प्रिंट करता है ध्यान दें इस समय इंडिकेशन out square brackets प्रदर्शित नहीं होता है
अब print 10 multiplied by 2 निष्पादित करें
अब 1 plus 2 को 10 multiplied by 2 से बदलें और एंटर दबाएं
किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा की तरह asterix का उपयोग multiplication operator के लिए किया जाता है
कंसोल पर आउटपुट देखें
अब देखते हैं कि tabcompletion क्या है एक उदाहरण देखते हैं
मानिए कि हम फंक्शन print का उपयोग करना चाहते हैं
इसके लिए प्रोम्प्ट पर केवल pri टाइप करें और टैब की दबाएं
जैसा कि आप कंसोल पर देख सकते हैं कि ipython प्रिंट के लिए कमांड pri को स्वतः पूर्ण करता है
ipython की इस विशेषता को tabcompletion कहा जाता है
tab completion की कुछ अधिक संभावनाएं देखते हैं
इस मामले में हम देखते हैं कि ipython कमांड का पूरा नहीं करता है
ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ p से शुरू एक से अधिक कमांड हैं
इसलिए यह p की tabcompletions की सभी संभावना को केवल सूचीबद्ध करता है
एक अध्याय की कोशिश करते हैं
विडियो रोकें प्रश्न हल करें और पुनः विडियो चलाएं ab से शुरू होने वाली कमांड्स ज्ञात करें
a से शुरू होने वाली कमांड्स को सूचीबद्ध करें
ab a b s abs में स्वतः पूर्ण करता है
a टैब a से शुरू होने वाली सभी कमांड्स की सूची प्रदर्शित करता है
अब देखते हैं कि फंक्शन्स abs का उपयोग क्या है
इसका पता लगाने के लिए हम ipython के हैल्प विशेषता का उपयोग करेंगे
फंक्शन के प्रलेखीकरण को देखने के लिए फंक्शन बाद में प्रश्न चिन्ह टाइप करें
ipython interpreter फंक्शन के लिए प्रलेखीकरण दिखाएगा
प्रदर्शित जानकारी से यह दर्शाता है abs इनपुट के रूप में नंबर स्वीकारता है और निरपेक्ष मान वापस करता है
कुछ उदाहरण देखते हैं कंसोल पर a b s minus 19 और फिर a b s 19 टाइप करें
हमें अपेक्षा के अनुसार दोनों मामलों में 19 प्राप्त होता है
अब इसे दशमलव संख्याओं के लिए आज़माते हैंa b s minus 105 आजमाएं
हमें परिणाम के रूप में 105 मिलता है
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय का हल करने का प्रयास करें और विडियो पुनः शुरू करें
round का प्रलेखीकरण पता करें और देखें कि इसका उपयोग कैसे करें
हल के लिए कंसोल पर जाएं आप round question mark टाइप करके फंक्शन round का प्रलेखीकरण प्राप्त करें
यह यहाँ दर्शाता है कि function round दिए गए precision के लिए एक नंबर राउंड करता है
राउंड फंक्शन के लिए ndigits precision मान है
इसका अर्थ है कि ndigits वैकल्पिक है और 0 डिफॉल्ट मान है
वैकल्पिक पैरामीटर्स को python प्रलेखीकरण में स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखाया गया है
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय हल करने की कोशिश करें और विडियो पुनः चलाएं
round 248 round 248 comma 1 round 2484 round 2484 comma 2 का आउटपुट जाँचें
हमें प्राप्त होता है round 248 is equal to 20
round 248 comma 1 is 25
round 2484 is 20
round 2484 comma 2 is 248
अब देखते हैं कि टाइपिंग एरर्स को कैसे ठीक किया जाय जिसे हम कंसोल पर टाइप करते समय कर सकते हैं
जानबूझकर टाइपिंग एरर करें
हमें डॉट्स के साथ एक prompt मिलता है
यह तब दिखाई देता है जब पिछली पंक्ति अधूरी होती है
अब close parenthesis के साथ कमांड को पूर्ण करें और एंटर दबाएं हमें अपेक्षित आउटपुट प्राप्त होता है जो 2 है
क्या होगा यदि हम एक गलत कमांड टाइप करते हैं और continuation prompt के साथ समाप्त करते हैं
ऐसे मामले में हम कमांड को रोकने के लिए ctrl+c कीज दबा सकते हैं और ipython prompt पर वापस आ सकते हैं
round इनपुट के रूप में केवल नंबर लेता है round1a टाइप करें
parenthesis को बंद न करें और एंटर दबाएं
हमने इनपुट के रूप में अल्फा न्यूमेरिक मान 1 a दिया है निष्पादन रोकने के लिए ctrl+c दबाएं
यहाँ विडियो रोकें निम्न अध्याय हल करने की कोशिश करें और विडियो पुनः चलाएं
क्लोजिंग parenthesis के बिना round 2484 टाइप करें और एंटर दबाएं
ctrl+c का उपयोग करके कमांड को रद्द करें कमांड round 2484 comma 2 टाइप करें
आपके कंसोल पर आउटपुट इस तरह दिखना चाहिए
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा टर्मिनल में ipython टाइप करके ipython interpreter शुरू करना
ctrl+d का उपयोग करके ipython interpreter बंद करना
ऐरो कीज का उपयोग करके ipython session हिस्ट्री नेविगेट करना
कार्य तेजी से करने के लिए tabcompletion का उपयोग करना
question mark का उपयोग करके फंक्शन्स का प्रलेखीकरण देखना
गलती करते समय ctrl+c का उपयोग करके कमांड को रोकना
यहाँ हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं
ipython python के समान प्रोग्रामिंग भाषा है सत्य या असत्य
ipython को कौन सा कीज संयोजन बंद करता है
प्रलेखीकरण के प्रदर्शन के लिए ipython में कमांड के अंत में किस अक्षर का उपयोग किया जाता है
और उत्तर हैं असत्य ipython नई प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है यह केवल एक उन्नत इंटरैक्टिव python interpreter है
हम ipython interpreter को बंद करने के लिए ctrl + d का उपयोग करते हैं
हम इसके प्रलेखीकरण के प्रदर्शन के लिए कमांड के अंत में question mark का उपयोग करते हैं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
हम कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं प्रमाणपत्र देते हैं कृपया हमसे संपर्क करें
क्या इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपको कोई प्रश्न है
अपना प्रश्न संक्षिप्त में बताएं fossee टीम से कोई उनका उत्तर देगा
क्या python में आपके पास कोई सामान्य/तकनीकी प्रश्न है
कृपया fossee forum पर जाएं और अपना प्रश्न पोस्ट करें
fossee टीम लोकप्रिय पुस्तकों के कई हल किए गए उदाहरणों की कोडिंग का संयोजन करती है
हम ऐसा करने वालों को मानदेय और प्रमाण पत्र देते हैं अधिक जानकारी के लिए कृपया इस साइट पर जाएं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से में जया आपसे विदा लेती हूँ धन्यवाद